यह सड़क के किनारे बहुत बड़े-बड़े गमले में पौधे लगे हुए हैं एवं बहुत सारी भीड़ भी यहाँ पर है।

यह यह जगह पर लड़का एवं लड़की खड़ी हैं इस जगह पर बहुत ही सुंदर --

एक रूम है इस रूम में बहुत सारे शीशे लगे हुए है। यह रूम में बहुत सी कुर्सियां भी है। यह कुर्सियां काफी सुंदर है। यह रूम भी काफी बड़ी है। यह रूम के --

इस जगह पर छोटी-छोटी घाछे हैं यह गाछो में छोटी-छोटी पत्तीयां हैं यह पत्तीयां काफी सुंदर होती हैं |

यह पत्तीयां चाय में दी जाते हैं चाय भी सवादिष्ट बना जाती है ।.

यह जंगल के किनारे बहुत ही बांस एवं लकड़ियाँ रखी हुई है। इस लकड़ियाँ पर मोड़ खड़ी है।